स्टेशन बना है जिस स्टेशन के सामने एक ऑटो कुछ ऑटो गाड़ियां स्कूटियां खड़ी हुई हैं।

बुक सेंटर है जिस बुक सेंटर में कबर्ड बना हुआ है।